एगो कहीं के बस हिया बस त बहुत देखे में बढ़िया लाग तिया बस बहुत बड़ बिया दू गो मेहरारू बाड़ी जा एगो मेहरारू आपन हाथ पीछे लेले बाड़ी एक जानी बैग पर लेले बाड़ी बहुत जाना मरदाना बाड़न जा मरदाना खाड़ा बाड़न जा।

एगो आदमी के लागता पैर कट गईल बा आपन पैर में पट्टी बंधवैले बा देखे में बहुत सुन्दर लागताबेचारा के दर्द बहुत ज्यादा होत होइ।